यहाँ यहाँ पर एक कई सारे वर्कर हैं यहाँ उन सभी वर्करो को एक एक आदमी गाइड कर रहा है।

यहाँ पर एक सितारा ऊपर की ओर लगा हुआ है यहाँ पर लाल रंग की लाइटे जल रही है जिससे पूरी बिल्डिंग लाल दिखाई दे रही है यहाँ बाहर भी एक प्लस का साइन बना हुआ है।

एक मेन रोड हैं जिसके साइड मे एक दिवाल पर कुछ पेंट से लिखा हुआ हैं यहाँ साइड मे दो लाइटें जलती नज़र आ रही हैं एक मकान हैं जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ हैं।

यहाँ पानी में एक व्यक्ति अपने पैर डालकर बैठा हुआ है उसने चौकड़ी का चड्ढा पहना है और ऊपर टी-शर्ट पहनी हुई है यहाँ सामने की ओर बादल दिखाई दे रहे है।

यह एक बिल्डिंग है जिसमे ऊपर की ओर एक चार बड़े- बड़े से गेट जैसे बने हुए है यहा पर नीचे कई सारी खिड़कियाँ नज़र आ रही है।

यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है जिसने मास्क लगाए हुआ है पैर में बूट पहने हुए है और साइड में उसी के साइड में एक बड़ा सा गेट बना है।

यह एक गेट है जिस पर एक पत्ती बनी हुई है ऊपर से एक तिल भी निकली है जिसके कोनो पर एक एक मोर बने है।